चार एल_इडी लाइट लाग री है एक पंखा लाग रा है नीचे दुकान है दुकान के ऊपर शीसा भी लग रा है माला भी टांग राखी है ऊपर इनके आगे दो आदमी खड़े है एक आदमी के हाथा में फ़ोन है।

ये फोटो एक मार्केट की है जिसमे एक दुर्गा देवी का मंदिर है और एक आदमी इधर चल रहा है सामने ऑटो खड़ा एक लड़की साइकिल लेके चला रही उसके पीछे दो लड़के स्कूटी लेके चल रहे है।

यह एक ब्याह की फोटो हैं जे में एक शादी समारोह है और एक अंदर बहुत सारी चेयर लाग री हैं ऊपर स्टेज लगा रखा हैं स्टेज प्रोग्राम चाल रहा हैं बहुत रंग बिरंगी लाइट लाग री उरली साइड में डिस्को लाग रा है और उरली साइड में बहुत बड़ो टैंट लाग रा हैं।

आ एक कॉपी किताबा की दुकान है ए माइन बड़ी सारी किताब पड़ी है सामने दराज लाग री है ऊपर एक पंखो लाग रेहा है और ये यो छोरो हाथ पैन लिए खड़ो है एक आदमी उधर पहन लेन आरे।

स्टेस्नरी की दुकान है जिस पर लिखा है मानसरोवर स्टेस्नरी ।

और ओडली साइड टेम्पो खड़ा है टेम्पो मे आदमी समान लोड करे है इसदली साइड मे दुकान मे कुरकर टंग रहा है बे के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी है एक साइड में मोटरसाइकिल खड़ी है।

एक स्कॉर्पियो खड़ी हैमोटो उसके पास में एक टैम्पू खड़ा है पीछे से एक बस आ रही है और बहुत सारी सवारिया खड़ी है।

ये फोटो एस_बी_आई के ए_टी_एम की है नीचे लिख राख्यो है स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अ के दूसरी एक पेडी जा रही है जो बैंक के में जा रही है।

साइड में पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी है उरली साइड में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खड़ी है आग एक साइड मे पंखा की दुकान है अंग आगे लिख रखो है मां सीता आंग ऊपर एक तार जारों है जम लाइट है फिलहाल लाइट आरी है।

और आगे जो छोटा छोटा पोधे लगे हुए है ताकि जिनमे हरियाली आ सके इसने ऊपर सफेद रंग का आसमान छाया हुआ है जो काले बादल हो रहे है साथ मे और ये जो गोल्डन कलर का इसका कलर है।